ये एक डिपार्मेंटल स्टोर की शॉप है यहां पे कई सारी चीजें अवेलेबल है यहां पे।

कैचप अ कही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे ऑयल वगैरह हर एक किस्म की --

के कपड़ों की शॉप है जहाँ पे धोतिया व्य वगैरह है और बहुत ही बढ़िया रंगीन कपड़े है।

ये न्यू ताज हेयर सैलून है जोकि जेंट्स का है।

ये एक दुकान है जहां पे फर्नीचर वगैरा है जोकि जुरैरी फर्नीचर --

के नाम से जाना जाता है यहाँ पे एक पुलिस मैन भी है और भाई साहब एक --

ये एक हार्डवेयर की शॉप है जहाँ पे --

ये एक स्कूल है जहाँ पे --

ये जिम है यहां पे बहोत सारे लड़के जिम कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं ये--

ये एक पारक है यहाँ पे कही सारे बच्चे खेल रे हैं और कुछ एक्ससाइज की मशीनें भी हैं यहाँ पर --

ब्लैक कलर है जो कि लोहे का बना हुआ है।

लब भी कहीं सारे हैं यहाँ पर --

ये बेड है यहां पर तीन पिलो है और यहां के पिलो का कलर --

ब्लू कलर है और ल लाल कलर है यहाँ पर एक कम्मल भी है यहाँ पर पर्दे भी हैं और दीवार पर कु --

लाल कलर के पीले कलर के काफी सारे फूल है।

यहाँ पर बच्चों के साइकिल का जो रंग है वो --

यहां पर कुछ गैस सिलेंडर नए हैं और कुछ गैस सिलेंडर पुराने हैं।

ये एक रेडीमेड की शॉप है यहां पर दो बंदे--

यहां पर पानी की बॉटल भी है और टिशु यहां पर यूज किए हुए--

यहाँ पर लाइटें वगैरह भी है ये एक प्लेग्राउंड जैसा दिख रहा है।

इसके ऊपर एक बोर्ड है जिसका नाम स्टेट इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है।

दीवार पे कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं यहाँ की जो जिम की मैशिन्स हैं वो रेड कलर की है।